राइट साइड मैं एक आदमी हैं सामने कुछ खड़े हुए हैं सामने एक बाइक खड़ी हुई हैं सामने वह सफ़ेद कलर --